कट काट के बास में चढ़ता है यहाँ पर हर वक़्त लोगो का आना गोना लगे रहता है।

यहाँ पर हर दिन दस लॉरिया आता जाता है।

देता है यहाँ पर चार वर्कर काम करता है यहाँ पर वर्कर लोग बहुत अच्छे से काम करता है।

एक कारजलाये बहुत ही बड़ा है यहाँ पर कारजलाये के बाहर एक बड़ा सा गेट है गेट के अंदर --

बाहड़ का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है पैलेस के सामने दो सीढ़ी भी है यहां पर --

ये हमारे इलाका का एक सरकारी है यह बहुत ही बड़ा है।